सामने कई सारे पोस्टर लगाया हुआ है।

और कई सारे काउंटर भी है।

टेबल के ऊपर टोकरी में रखा हुआ है सामने में अलमीरा भी है।

बिल्डिंग में कई सारी सीढ़ियां और खिड़कियां भी हैं।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

सामने में एक मैदान भी है।

सामने में दो बच्चे भी हैं।

आसपास कई सारे पोस्टर्स भी लगाया हुआ हैं।

सामने में वो चार फोटो फ्रेम में लगाया हुआ है।

आस पास कई सारे पेड़ पौधे भी--

आस पास कई सारे स्कूटी और बाइक भी रखा हुआ है।

मुझे इस तस्वीर में एक बड़ा सा सफेद कलर का बिल्डिंग दिखाई दे रहा हैं।

इसके ऊपर दो पिलो भी है।

बिल्डिंग के दीवारों पर वाइट कलर पेंट किया गया है।

पीछे की जमीन भी दिखाई दे रहा है।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

इस रूम में एक कर्टेन भी लगाया हुआ है और दो खिड़कियां भी है।

कई सारे भी लगया हुआ--

टेबल के ऊपर कई सारे टिशू पेपर भी है।

पास कई सारे पेड़ पौधे भी--

आसपास कई सारे पेड़ पौधे भी हैं।

ब्लैक और व्हाइट कलर का है।

सामने में बहोत सारे घास फूस भी है।

आसपास कई सारा कुर्सीया और टेबल भी रखा हुआ है।

और कई सारे लोग भी--